बाहर बाइक और स्कूटी खड़ी हुई है।

यहां पर जालीदार एक दरवाजा भी है।

ऊपर कुछ गोल डिजाइन का बना हुआ है।

जिसमें बहुत सारा फर्नीचर का सामान रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

जीसके बाहर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

यह एक खाने का टेंट है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं।

उसने हाथ में एक पेपर पकड़ा हुआ है।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

और एक आग बुझाने का यंत्र भी है।

एक ए_टी_एम भी है और एक बड़ा जन्नेटर भी है।

और इसमें बहुत सारे डेकोरेशन कर रखी है।

और ढ़ोल वाले भी हैं। यहां पर केले के पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर दो स्कूटी खड़ी हुई है।

बाइक भी है और बहुत सारे व्यक्ति भी है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक बड़ी सी दुकान है जिसके ऊपर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर टी_वी एस लिखा हुआ है।

नीचे बहुत सुंदर मार्वल बिछा हुआ है।

नीले और ग्रीन कलर का कांच लगा हुआ है।

इनमें से कुछ टमाटर खराब भी दिखाई दे रहे हैं।